और बाहर रोड पर आप देख रहे हैं काफी बस वगैरा है और ट्रैफिक वगैरा चलता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मा हम देख सका हैं एक खंभा जिसके ऊपर अल्ट्राटेक सीमेंट लिख रखी हैं और यह दुकान है शायद दो घर--

रखे हुए हैं इसके साइड में भी काफी क्रेटे वगैरा दिखाइ--

तो इस वीडियो फोटो मे हम देख सकते है कोई--

जो आगे की तरफ खड़ी है और ये बच्चों की सेल्फी ले रही है वीडियो बना रही हैं।

इस फोटो में हम देख सकते हैं ये एक ग्राउंड और पार्क है जिसमें--

सरस्वती की तस्वीर लगाई हुई हैं और बहुत बड़ा ऑफिस दिखाई दे रहा है।

कैंटीन या कोई कैफे वगैरह दिखाई देवे जिसमें कि प्लास्टिक की मेज और चेयर्स --

डली हुई है काफी आदमी इधर अंदर बैठे हुए है यहां पर पिज्जा बर्गर --